यह शहीदो का स्थल है और जो जो जो भी जवान शहीद जाता है उसकी यादो में ये बनाया जाता है।

और साथ में ही लाइट वाली ममम पी लाइट वाली पिलर भी खड़ी है और जगह-जगह पे घर हैं बने हुए है और पेड़ भी लगे हुए हैं।